इस तस्वीर में हमें कुर्सियां भी दिखाई दे रहे हैं।

सी दिखाई दे रहा है इस बैंक में हमें लोग दिखाई दे--

है। यहां पर हमें रोशनी भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे खिलौने भी दिखाई दे रहे हैं।

कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर हमें बहुत सारा समान दिखाई दे दे रहा है।